अभी जो है यहाँ रोड पे पीछे बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग्स है बनी हुई।

इसमें की पीला नंबर प्लेट है बी आर ज़ीरो सेवन सिक्स सिक्स एइट नाइन टू नंबर है इसका।

एक औरत है जो की हाथ में झोला ले के आ रही है वह औरत मास्क पहनी हुई है और उजला साड़ी पहनी हुई है।

और उधर एक साईकल वाला आदमी आ रहा है उधर से आकाश उजला है और दुकान में पेंट ब्लू --

और एक ढलाई मशीन है आकाश उजला है दुकान है शटर वाला चारों खुला हुआ है एक में --

यह इसमे एक बस का फोटो है जिसका नाम कौटिल्य ट्रावेल्स है यह बस --

और पीछे कुछ लोग है जो की बस के तरफ --

और एक लड़का है जो की यहाँ बैग टाँगा हुआ है और उस लड़की के हाथ मे एक कार्टून है जो जिसकी और वह गौर से देख रहा है |

यह एक सिनेमा घर है जिसे की अंदर से दिखाया गया है यह बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें बड़े सा --

यह एक फन सिटी पार्क का के सामने का फोटो है जिसमें की सिटी पार्क --